दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है आसमान भी दिखाई दे रहा है छोटा भी दिखाई दे रहा है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे ये दिखाई दे रही फॅन भी दिखाई दे रहा है और लाइटे भी दिखाई दे रही है।